रंगोली बना रही है और उसके आस-पास झाड़ हैं जो की बहोत ही--

यह एक बहुत बड़ा समुद्र हैं और यह इसमें जहाज--

योजना यह कुछ समझा रहा है और यह --

घुम रहा है और उसके आस - पास --

एक व्यक्ति उसका फोटो लेते हुए नज़र आ रहा है।

यह स्त्री करने वाला है उसके पास बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं।

जो की उसको स्त्री करना है।

मनमोहक़ है। बहुत ही सुन्दर सजावट कि गयी है। और--

दो भैंस जा रही है और आस -पास --

तेंद्रि रंग के फूल जैसा कुछ

चढ़ने और उतरने के लिए किया जाता है खूद से चढ़ना उतरना बहुत --

और कोई ऑटो में बैठा है कोई निचे खड़ा--

स्टोर नजर आ रही एक जयश्री जेनरल स्टोर पर एक किराना स्टोर और --

ना के बराबर हो जाती है यह अत्यंत उपयोगी --

पैसे की नि सुविधा हो जाती --

यह एक कार्यक्रम नज़र आ रहा है जिसमे एक--

यह एक मेन एक रोड हैं जहाँ--

चित्र लगा हुआ है और यह साफ सफाई --

के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए हैं।